और कपड़ा का दुकान का नाम है कार्तिका फैशन और यहाँ पे टब भी दिख रहा है अच्छा-अच्छा कपड़ा है इस दुकान में।

ये भी माट है जहां ये भी माट मॉल है जहां पे बोहुत सारे लोग आते हैं कपड़ा खरीदनें के लिए। यहाँ पे शो पीस में कपड़े लगाए होते हैं वहाँ से कपड़ा पसन्द करके लोग अपना कपड़ा लेते हैं और यहाँ पे इसका पोस्टर भी लगा हुआ है।

कोई गोल्डन का है। यहाँ पे घर भी बोहोत बहु बड़ा-सा दिखाई दे रहा --

ये घाना जंगल है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगा हुआ हैं और बीच-बीच सड़क भी है और यहाँ पे एक अपाचे बाइक लगा हुआ है।

साइड में वाइट कलर का टंकी हैऔर यहाँ पे लग रहा है किसी का घर बना हुआ है तो अभी पलस्तर भी नहीं हुआ है और यहाँ पे बहुत लंबे-लंबे इसका गेट है।

ये कोई जगह है जहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है मशीन पे पर दो लोग बैठ के यहाॅं --

ये कोई कॉलेज का गेट देखाई दे रहा है जहाँ पे कुछ लोग खड़े है कुछ लोग इ रिक्शा पे है कुछ लोग ऑटो पे है।

ये लग रहा है चर्च है जहाँ पे दो लड़कियाँ मोमबत्ती जला रही है कुछ लोग बैठे है इधर --

ये हेयर सैलून है और यहाँ पे म मसाज भी होता है और एक जेंट्स बैठा हुआ है जो मोबाइल चला रहा है और यहाँ पे --

ये गोपालगंज का सदर अस्पताल है सरकारी हॉस्पीटल जो कि ये सामने का गेट है जहाँ पे एक लड़का और एक औरत जा रही है और वहाँ आगे एक साइकिल से जा --

लाइब्रेरी रूम है जहाँ पर बहुत सारा पुस्तक मिलता है पढ़ने को और ये इतिहास की यहाँ से मतलब बहुत सारा पुस्तकें मिलेंगी आपको जो भी पुस्तक चाहिए यहां आपको अवेलेबल मिलेगा।